यह केक काफी सुंदर भी है। यह केक को आदमी बर्थडे में ले जाते हैं। इसे काटते भी हैं।

यहाँ दो टंकी में डीजल रखे गये यहाँ बहुत से गाड़ी आ कर पेट्रोल एवं डीजल भरवाते हैं ।

मैदान है इस मैदान में बहोत बड़े-बड़े मेले के खम्बे भी हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी है। यह मैदान में काफी हरी-हरी घांस भी है।